और कुछ रंगीन गुब्बारे भी लगे हैं।

ये एक बर्तनों की दुकान है।

और अंदर काउंटर रखा है।

कुर्सी भी है और कुछ लोग भी हैं।

और कुछ लोग हैं लेडिस है कुछ हरे भरे पेड़ है।

यह एक बहुत बड़ा जंगल है।

दो वाटर की बोतल रखी हैं और नीचे टाइल बिछी हुई है।